उसके पीछे पुल बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है।

कुछ-कुछ उसमें औरतें हैं उन्होंने भी मास्क पहन रखा है।

एक काले रंग की कर खड़ी हुई है।

और जृ भगवान की प्रतिमा कि धरोधर बोहोत अच्छी सजावट हो रखी है।

यह एक आइसक्रीम का ट्रक है। जिस पे देवनारायण आइसक्रीम लिखा हुआ है।

और वहां पर बोहोत सुंदर-सुंदर पौधे लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं।

और चिप्स टंगे हुए हैं और गुड नाइट के पैकेट टंगे हुए हैं।

यह एक कॉपी किताब की दुकान है। दुकान पूरी भरी हुई है।

यह एक सूरज डूबने का दृश्य है। जिसमे सूरज डूब रहा है और उसके पीछे --

मकवरे बने हुए है। छोटी-छोटी सी खिड़कियां बनी हुई है।

जिसपर बच्चों की झूलने वाली स्लाइड लगी हुई है।

यह एक जायसवाल होंडा गोवर्धन मोटर्स का शोरूम है।